बादल दिखत हे अउ पेड़ दिखत हे अउ रास्ता दिखत हे अउ बैठे वाला खुर्सि दिखत हे।

पेड़ दिखत हे खिरकी दिखत हे बन दिखत हे बईठे के दिखत हे मंदिर दिखत हे घर दिखत हे।

घर दिखत हे पानी दिखत हे रास्ता दिखत हे गाड़ी दिखत हे लाइट दिखत हे खंबा दिखत हे मंदिर दिखत हे टिटवा दिखत हे।

एक आदमी दिखत हे झण्डा फहराए वाला दिखत हे ओमा घर दिखत हे एक खंबा दिखत हे अउ पेड़ दिखत हे पौधा दिखत हे अउ नवा दिखत हे।